पोस्ट ऑफ़ इंडिया करके लिखा हुआ है उसके ऊपर जैसा देख पा--

जैसा मैं देख सकता हूं लोग टेबल चेयर पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं।

ये एक होटल की पिक्चर लग रही है जहां पर इसके अह अलमीरा वगैरह लक्कड़ की बनी हुई रखी हुई है और ये यहां पर पानी की--